ये ग्राउंड है। ब जिसमे बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है इस में सफ़ेद रंग की बिल्डिंग के बहार ये ग्राउंड है इस बिल्डिंग में चार मंज़िला ये बिल्डिंग है सफ़ेद रंग --

नीचे सिलेटी रंग किया गया है करा गया है सीढ़ियां है इसमें हर फ्लोर के लिए बाहर की तरफ सामने की तरफ पेड़ भी है बहुत सारे |

क्या पता बिल्डिंग के बाहर यह पाम के पेड़ हैं और भी काफी तरह के पेड़ हैं बिजली की तारे हैं जो की ऐसे ही हम्म अ दिखाई दे रही हैं हवा में --

पानी की व्यवस्था के बनाने के लिए और साथ में ही जो दीवार है वह पूरी ईटों की है पलस्तर नहीं हो रखा आगे भी काफी दीवार चुनी गई हैं जिसमें पलस्तर नहीं हुआ है सिर्फ ईटों की दीवार --